घर के अंदर में में बहुत सारा फूल फूल पॉट दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में हमे बुद्धा मूर्ति दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें बड़ा बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमें बाल्टी भी दिखाई दे रहा है।

घड़ी का नीचे में ग्रीन कलर का पर्दा भी नजर आ रहा है।

वायर को भी देखने मिल रहा है इस पिक्चर में हमें सामने में बहोत सारा बरा बरा पेड़ पौधा नजर आ रहा है।

सामने में बाइक भी देखने को मिल रहा है इस पिक्चर में हमें।

पेर का सामने में ग्रीन कलर में पोस्टर भी दिखाई दे रहा है।

सामने गाड़ी भी नजर आ रहा है इस पिक्चर में हमे।

सामने में बहुत सारा ग्रास देखने को मिल रहा है मिट्टी में।

में बड़ा बड़ा पेड़ पौधा भी नजर आ रहा है इस तस्वीर में हमें।

शीशा का अंदर में हमें परफ्यूम जैसा भी दिखाई दे रहा है।

इलेक्ट्रिक पोस्ट भी दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में हमें सामने में इलेक्ट्रिक वायर भी देने को मिल रहा है।

मिट्टी में फुल लोग दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में हमें।

घर में बहुत सारा डिजन बनाकर नजर आ रहा है।

रिसेप्शन का जगह में सरमन लिखकर दिखाई दे रहा है।

नदी का किनार मे हमें टावर दिखाई दे रहा है।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

सामने में बहुत सारा पेड़ पौधा भी नजर आ रहा है इस तस्वीर में हमें।

पिक्चर में हमें एक ब्रिज रस्ता दिखाई दे रहा है।

और दुर में एक पहाड़ भी देखने को मिल रहा है इस पिक्चर में हमें।

सामने में बैडमिंटन बास्केटबॉल पोस्ट भी दिखाई दे रहा है।

आसमान में व्हाइट बादल भी नजर आ रहा है इस तस्वीर में हमें।

इस पिक्चर में हमें एक यामाहा का डीलर दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में हमें एक दुकान दिखाई दे रहा है।

सामने में बहुत सारा कार भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक घर दिखाई दे रहा है।

सामने में टेबल भी नजर आ रहा है।

पिक्चर में हमें इलेक्ट्रिक पोज दिखाई दे रहा है।